ये फोटो किसी जू से लिया गया हुआ है क्योंकि शेर का बच्चा है और एक शेर भी है पीछे पेड़ है बगल से एक जाली लगा हुआ है ताकि शेर कहीं जा ना पाए किसी पर हमला ना करदे।

हेलमेट पहने हुए एक ब्लू कलर का एक ब्लैक कलर का ड्रेस भी एक ब्लैक कलर का है पीछे स्टेडियम टाइप से दिख रहा है जो नेट पे है।

ये फोटो रेलवे स्टेशन का है जहाँ पे सीढ़ी दिया गया हुआ है ब्रिज वाला इस साइड से उस साइड जाने वाला ऊपर एक बिजली का तार है।

सीढ़ी लाल कलर का है और ग्रीन कलर का लोहा डाला हुआ है ऊपर से एस्बेस्टस डाला हुआ है और इस पे अ कोई आदमी तो नहीं दिख रहा।